दूसरे साइड में बहोत येलो कलर के पेड़ रखे हुए हैं।

रोड के किनारे पेड़ लगे हुए हैं जो छोटे छोटे हैं।

दूसरे साइड में तीन आदमी बैठे हुए हैं जो वाइट और ब्लू कलर का पहने हुए हैं।

एक आदमी का चार पहिया से पीछे खड़ा है।

दूसरे साइड में टिफिन रखा हुआ है।

यहां पर ग्रीन कलर के गमले रखे हुए हैं।

दूसरे साइड में बहोत बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत आदमी बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

दूसरे साइड में एक हाथ बना हुआ है।

दूसरे साइड जमीन में घास उगी हुई है।

उसके सामने एक बड़ा सा घर बना है जिसमें खिड़की लगी हुई हैं।

जमीन में बहोत सारी ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

यहां पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं आलू प्याज स गाजर खीरा बैंगन टमाटर।

यह एक रेस्टोन है जहां पर कुर्सी पड़ी और मेजे पड़ी हुई हैं।

मेजों पर गमले रखे हैं जिसमे ग्रीन कलर का गुलदस्ते जैसा रखा है।

दूसरी साइड में एक पीपा रखा हुआ है।

दूसरे साइड में बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

पन्नी में माटी रखी है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

जिसमें भवन के अंदर बहुत सारी चार पहिया गाड़ी खड़ी हुई हैं।

दूसरे साइड में भवन बना हुआ है।

दूसरे साइड में जमीन में ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

जो शीशे में बहुत सारी मिठाई रखी हुई है लड्डू पेड़ा खुरमा।

दूसरे साइड में एक घर बना है जो येलो और वाइट कलर से पेंट है।

जिसमें दो जानवर बैठे हुए हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

यह एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है।

नीचे बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

बहोत छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं।

दूसरे साइड जमीन में छोटी छोटी ग्रीन कलर की घास लगी है।

दूसरी साइड में एक ऑटो खड़ा हुआ है जिसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

इसके साइड में बोर्ड लगा है जिसमें खटके लगे हैं।

घरों के पीछे बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक बड़ा सा आफिस है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां और बेंचें पड़ी हुई है।

बेंचों पर बहोत सारे पेपर और किताबें रखी हुई हैं।

जिसमें लाइन से बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

जो ग्रीन कलर का शर्ट पेहने हुए हैं।

दो व्हाइट और ब्लैक कलर का पहने हुए हैं।

और लंबी सी पाइप पकड़े हुए हैं।

यहां एक टूटी गाड़ी पड़ी हुई है जो बहोत सारी टूटी है।

दूसरे साइड में बेचें पड़ी हुई है जहां पर खाना परोसने वाला रखा हुआ है।